आसमान ब्लू दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक गाड़ी दिखाई दे रही हैं।

सामने कुछ एक्टिवा भी दिखाई दे रही--

जो कांच का दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है एक बिजली का खम्भा दिखाई दे रहा है।

कुर्सी सफेद रंग की दिखाई दे रही है।